बाई तरफ एक आदमी कंप्यूटर चला रहा है।

सामने एक तोलनें वाला काटा भी रखा हुआ हैं।

गेट के बाहर बाईं तरफ एक पिलर है।

जहां पर काली और पीले रंग की खूब सारी मशीने लगी हुई दिखाई दे रही है।